तल में जाने के लिए रास्ता हैं साइड से ही एक सिढी हैं जो की ऊपर जा --

जिसके सामने एक बड़ा सा गड्ढा किया गया है गड्ढे के आगे--

और सामने कुछ बाइक्स खड़ी हुई हैं और एक कार भी खड़ी हुई है इसके पीछे डबल मंजिल बिल्डिंग बनाई--

जिसको हम बाहर देखेंगे तो दिखाई देगा कि आदित ट्रैक्टर्स लिखा हुआ है।

जिसके सबसे ऊपर फ्लोर में सिटी डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल लिखा हुआ है।